यह एक विवाह भवन दिख रहा है जहाँ पे शादियाँ होती है।

यहाँ वर्कर सब को समझाया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे वर्कर दिख रहें हैं।

यहाँ पे बहुत सारे लड़के मोजूद हैं और यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है।

यहाँ पे बहुत सारे आदमी भी हैं। सब बस एक ही रंग की है और रेड कलर की बस सब है और यहाँ पे एक टावर भी दिख रहा है।

मॉल दिख रहा है जहां पे खाने पिने के बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

साइकिल स्टोर दिख रहा है।

यहाँ हीरो एवोन गैंग पोलो साइकिल सब मिलते हैं

यहाँ सब तरह की साइकिल मिलती --